पर एक रोड दिखाई दे रहा है रोड बहुत ही बड़ा दिखाई दे--

इसका लोगो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।